यहां पर एक पेट्रोल पम्प दिखाई दे रहा है जहां पर च चार बस दिखाई दे रही है।

यहाँ पर नर्वदा जी में दो भैंस दिखाई दे रही है वो एक दूसरे से मुंह मिलाते हुए नजर आ रही हैं दूर जाकर बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और अंग और अंकल के पीछे एक गेट दिखाई दे रहा है जहाँ पर पर्दा लगा हुआ है।

और हेलीकॉप्टर के थोड़ी दूर चल कर पहाड़ सा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे लोग दिखाई दे रहें हैं बहु छठ की पूजा करते हुए लेडीजें दिखाई दे रहीं हैं यहाँ पर बाजू में एक खेत भी दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ लोग खड़े हुए --